इनके गले में फूलों की माला डली हुई है यहाँ पर बहुत सारी फूलों की माला पड़ी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर लाइट का खंबा दिखाई दे रहा है यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहा है जो काफी सुंदर लग रहे हैं।